यहाँ पे हमे एक पोस्टर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ।

तकिया लेकर नीचे की ओर देख रहे है यहां पर बोर्ड उर्ड लगा हुआ है उससे आगे --

एक बगुला दिखाई दे रहा है जो की खेत में घूम रहा है उसममें बहुत पानी भी लगा हुआ हैं।

ये चमकी जैसा नजर आ रहा है ये अक्सर पानी मे रहा करते हैं।